मकान है और बहुत से लोग दिख रहे हैं इसमें और ये मेन गेट है बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफी बड़ा सा यह दिख रहा है काफी अच्छा बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा ये दिख रहा है काफी अच्छा बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा ये दिख रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये।

एक नर्शिंग होम की बिल्डिंग नजर आ रही हैं ये काफी बड़ी बिल्डिंग हैं बड़ा सा बोर्ड लगा हुवा हैं और यहाँ बड़ा सा मेइन गेट हैं।

गाड़ी की गाड़ी खुली हुई है और इसकी सर्विसिंग हो रही है सामने बहुत सारे औजार औजार भी रखे हुए है और यहाँ पे गाड़ी को ठीक किया जा रहा है।